आसमान का कलर सफेद है बिल्डिंग का कलर पिंक है दरवाजे कलर काला है।

कलर ऑरेंज है छत का कलर हरा है और नीचे फर्श है उसका कलर नीला है।

यहां एक फर्श है उसका कलर ऑरेंज है ये व्यक्ति बैठा कपलों कपड़ों का कलर लाल सफेद और पर्पल --

काउंटर का कलर ऑरेंज है दीवार का कलर पीला है छत का कलर क्रीम है।

आसमान उसका कलर आसमानी है पौधे हैं उनका कलर हरा है फर्श हैं उसका कलर पीला है।

फर्श का कलर ब्लैक है आसमान का कलर आसमान में खंभा है उसका कलर ब्लैक है घास है उसका कलर हरा है।

घास का कलर हरा है खंभे का कलर सलेटी है आसमान का कलर आसमानी है।

फर्स का कलर भूरा है बिल्डिंग का कलर सलेटी है और खंभे का कलर सलेटी है वेन का कलर सफेद है।

आसमान का कलर सफेद है और एक पाइप है उसका कलर सलेटी और सफेद है हवाईजहाज का कलर --

है फर्श का कलर ब्राउन है सामने बैनर है उसका कलर पर्पल है पौधों का कलर --

एक कार खड़ी है उसका कलर सफेद आसमान का कलर --

फर्श का कलर लाल है एक लड़की बैठी कपड़ा पहने सफेद और काला है दीवार का कलर पिंक --

व्यक्ति का रा कपड़ों का रंग पीला और काला है टैक्सी का कलर पीला है।

कैम्पर का कलर पिंक और सफेद है फर्श का कलर ब्राउन है सामने बैग का कलर --